सामने एक स्टेज दिख रहा है जिसपे निचे--

सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो बीच में कथई सफेद और दोनों साइड पीली और--

सामने एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमे बैठ ने वाली बहोत सारी कुर्सियां--

एरर्स लिखा हुआ है और अंदर बहुत सारी रंगीन--

सामने एक हॉल दिख रहा है जिसमे सामने मंदिर--

बड़ी-बड़ी लगी हुई है और साइड में एक तख्त रखा है और कुछ सामान --

अ दो पंखे दिखाई दे रहे है और सामने एक आइस क्रीम का फ्री--

रखा हुआ है जिसमे बहोत -बहोत सारी आइसक्रीम छुपी हुई हैऔर सामने --

ग्रे कलर की है और बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पानी--

दिखाई दे रही है और एक पीला कलर का घर दिख रहा है और फु--

लिखा हुआ है निचे कुछ आदमी खड़े हुए है और काच का गेट --

गेट के अन्दर कुछ मूर्ति रखी हुई है जिनमे एक थाल--

फेली हुई है उपर रंगीन फूलो के गेट बना हुआ है उपर--

दो लडकी एक लडकी बैठी हुई है जो कुछ लिख रही है और सामने दीवार सफेद कलर की है जिसमे उपर एक--

एक कथाई कलर की होटल बनी हुई है और पीछे दिवार क्रीम कलर की है सामने एक टेबल और--

सामने बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमे मोटे मोटे खम्बे बने हुए है और ऊपर--

पिन्नी लगी हुई है और कुछ पोस्टर लटक रहे है।

बहोत सारी मछलिया रखी हुई है साइड में एक बॉस का वोहिया है।